यहा पर खूब सारे पानी दिख रहे है बड़े बड़े पत्थर दिख रहे है और खूब सारे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे है बादल दिख रहे है आसमान में जो की काफी घने और काँदे है।

यहाँ पर रेल चलती है और यहाँ पर बहोत सारी गिट्टीया पड़ी हुई है और यहाँ पर दो पटलिया है जिसके ऊपर रेल चलती है।

और यहाँ पर बहोत सारे दूबा है पेड़ है पौधे है और यहाँ पर पहाड़े भी है जिनके ऊपर--

और यहाँ पर बहुत सारी चीज मिलती हैं और ये बहोत अच्छा दिख रहा हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं और दुबई दिख रही हैं।

एक रेलवे स्टेशन दिख रहा हैं यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी रखा हुआ है तो ये रेलवे स्टेशन खाली पड़ा हुआ हैं आस-पास काफी जंगल दिख रहा हैं ।

शाम का टाइम हैं सूरज ढल रहा हैं और सूरज की कुछ किरने पानी पर पड़ रही हैं जो की काफी अच्छी लग रही हैं कुछ झड़िया दिख रही हैं कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक मोहल्ला जो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आस पास काफी गार्डन हैं रोड हैं इसके आसपास गमले रखे हुए हैं और गार्डन मे पेड़ पौधे लग रहे हैं दुआ हैं पेड़ पौधे हैं।

यहाँ पर काफी जंगल दिख रहा हैं जो की टूर शो कर रहा हैं यहाँ पास पे किनारे पे पेड़ पौधे उग रहे हैं कुछ फूल उग रहे हैं जिसमे खूब अच्छी फूल पिंक कलर के उग रहे हैं आ रहे हैं काफी अच्छा लग रहा हैं यहाँ जंग--

यहाँ पर एक काफी बड़ा जंगल दिख रहा है अउ जंगल के बीच मे से एक पुल निकला हुआ है जो रेलवे का है रेल पटरिया है यहाँ पर--

और यहाँ पर रेल आया हुआ हैं और आस पास काफी जंगल दिख रहा हैं बिजली का खंभा दिख रहा हैं यहाँ पर काउन्टर बताया हुआ हैं दू ठो पर्ची लेने के लिए गमला दिख रहा हैं रेल दिख रहा हैं।

लिखा हुआ है जो की यहाँ पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हैफास्ट फूड लिखा हुआ है और बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर कांच का दरवाजा लगा हुआ है। जिसके ऊपर फूल मड़े हुए है।

यहाँ से कुछ पानी बह रहा है जो कि पत्थरो से धीरे-धीरे धीरे-धीरे आ रहा है।

पत्थरो पर बहोत सारे पत्ते है और यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए है पेड़ भी होंगे लेकिन दिख नही रहे है।